यहाँ पर लोग आकर अलग-अलग बुक्स ले सकते हैं बुक्स इश्यू करा सकते हैं जिसको पढ़ना है वो यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकता है।

एक जिम है जिसका नाम एम.एस. फिटनेस है और इसमें बहुत सारी मशीन्स रखी गई हैं।

लगाते हैं तो ट्रेकटर वही काम कर रहा है। बहुत बड़े-बड़े आम के पेड़ लगे हुए --

व जिसमें प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक लिखा हुआ है। बैंक में लोग आपने पैसे जमा करने जाते हैं।

एक बहुत बड़ा जिम है और इसमें काफी सारी मशीने रखी गई हैं और जो भी हम जिम में इक्विपमेंट यूज करते हैं। सारी की सारी --